एक बस है। बस के सामने कांच है। कांच के बगल मे दो लोग खड़े हुए हैं। उसके बगल मे एक टैक्सी है। बस के पीछे एक पेड़ है। पेड़ काफी बड़ा है जो हरा-भरा है उसके बगल मे एक और बस है वो बस लाल कलर का है उसके सामने ये कांच भी लगा हुआ है।

पीछे साइड काफी सारे साड़ियां और रखी हुई है और यहां पर सफेद कलर का एक समान रखा हुआ है| नीचे कारपेट बिछा हुआ है।

अगल बगल पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे और काफी बड़े है। बीच में लाइट लगा हुआ है जो लोहे के उसमे लगा हुआ है। उसमे के बगल मे बैठने वाला है जो का है।